यहाँ देख सकते हैं की शहरी प्राथमिक स्वास्थ केंद्र है।

जो एक ही रास्ता जा रहा है उसके ऊपर लगा हुआ है सड़क के ऊपर है।